ये किसी रूम की पिक है जहाँ ये विंडो दिखाई दे रही है।

बच्चे यहाँ पे काफी सारे झूले दिखाई दे रहे हैं काफी सारे बच्चे यहाँ पे।

कुछ काफी सारे यहाँ पे झूले वगैरह भी हैं जो बच्चे--

और यहाँ पर काफी सारे बड़े-बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी चक्की की पिक है जहाँ चक्की लगी हुई।

चक्की बंद पड़ी है इस टाइम लेकिन चक्की काफी पुरानी दिखाई दे रही है।

ये किसी टायर केयर की दुकान है आई मीन जहाँ टायरों की दुकान है बाइक कार टायर यहाँ मिलता है।

ये अ कारों की रिपेयर टायरों की रिपेयर हो रही है ये कार खड़ी हुई है एक वाइट कलर की और इसमें टायर एक्सचेंज हो रहे हैं।

मंदिर में तीन मंदिर के मेन गेट के ऊपर तीन मूर्तियां रखे हुए हैं।

और ये अनाउंसर भी यहाँ पर लगा हुआ है ये मेन मंदिर में मेन गेट की पिक लेकर यहाँ अपलोड की हुई है।

ये किसी लोहे का सामान वगैरह यहाँ रखे हुए हैं काफी भारी भारी कराटी सी लोहे की है ये।

ये काफी सारे यहां पर ये रखे हुए हैं।

ये एक कन्फेक्शनरी की दुकान है जहां पर काफी सारी है ये--

मिलते हैं सभी यहां पे ये बहुत सारी ले बुक्स वगैरह यहां पर रखी हैं।

यहां पर यह एक आदमी पैदल चल रहा है और यह बाइक वगैरह बाइक है बस हैं।

ये अपने हाथ से किसी ने बुक लेकर यहाँ पर पिक अपलोड की हुई है।

ये हाथ को नहला रहे हैं हाथी को नहलाने के लिए हाथी के ऊपर चढ़ा हुए हैं और ये--

काफी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है नहर में।

बड़े बड़े पैर पौधे यहाँ बड़े-बड़े दिख रहे हैं ।

ये किसी पहाड़ियों की पिक ही जहाँ लोग एन्जॉय कर रहे--

इसमें हरियाली भी दिखाई दे रही है पेड़ पौधे भी यहाँ पत्थरों के बीच में उगे हुए हैं।

और ये वीवो का यहाँ पर सर्विस सेंटर है ये वीवो का सर्विस सेंटर है।

टेबल रखी हुई हैं कूलर भी दिखाई दे रहे हैं।

मछलियां काट काट कर ये यहाँ डाली हुई हैं और ये सारी मछलियां मरी हुई हैं आई थिंक ये पॉकलेट हु--

ये लड़का ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए ये अपनी सेल्फी ले रहा है खुद को सीसे में देखकर ये सेल्फी क्लिक कर रहा है।

टिकट वगैरह बुक कराते हैं और यहाँ भी काफी भीड़ दिखाई दे रही है लेडीज खड़ी हुई हैं जेंस भी खड़े हुए हैं।

मेरे यहाँ दीवार पर लगी हुई है ।

विंडो भी लगी हुई है नीचे वाल पर या रबड़ के पायदान पड़े हुए हैं।

ये किसी चीज की दुकान है जहाँ ये रैंक में काफी सारे डब्बे वगैरह रखे हुए हैं।

कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है बट रैंक में रखे हुए हैं।

और काफी सारा सामान रखा हुआ है रेड कलर की रैंक है।

यहां शीशे में साफ-साफ दिखाई दे रहा है बाहर के कैमरे में है।

बाहर भी पीछे शीशे में सब कुछ साफ-साफ दिख रहा है।

जीटो की यह दुकान है जहाँ काफी सारे टायर्स भी रखे हुए हैं।

ये कोई शो चल रहा है जिसकी ये लड़कियाँ कर रही हैं नाटक।

ये बिल भी कंप्यूटरा से देते हैं बना बना बनाकर।

और इसमें मिट्टी भी दिखाई दे रही है साइड में।

घासें ही घासें दिख रही है ये चारों तरफ।

ये किसी हरियाली की पिक है जहाँ पर यह बड़े बड़े न--

साइड में सभी तरह के नर्सरी में पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी मॉल की पिक है जहाँ ये--

लोग आना जाना कर रहे हैं मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं घूम रहे हैं।

और कुछ लोग खड़े हुए भी हैं गेट पर मॉल काफी सुंदर दिखाई दे रहा है ये बड़ा मॉल है कोई।

ये किसी हॉस्पिटल की भी है जहाँ पर यह--

यह कोई वीज़ा का शो ऑफिस है जहाँ लिखा हुआ है--

ये कोई टॉयज की शॉप है जहाँ पर ही छोटे-छोटे टॉयज रखे हुए हैं काफी सारे एनिमल्स हैं बर्ड्स ।

और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं तो ये कोई बड़ी शॉप है टॉयस की।

बेबियों के लिए टॉयज काफी लुभाने वाले हैं ये।

ये किसी बड़ी इमारत की फोटो है ये जहां से ये मेन गेट एंट्री करते हुए दोनों बिल्डिंग की ले रखी--

ये कुछ लड़कियाँ यहाँ पर नृत्य कर रही हैं।

मुझे नहते के समारोह में कर रहे हैं।

इसमें कुछ रैंक भी रखी हुई है।